और पीछे के जो बैकग्राउंड है ना--

और एक ठे नीला के टोकरी हैं।

ये राइट साइड तीन ठे दौड़े वाला हे बा--

और एक पूरा एक कमरा जैसे दिखत हैं।

और एक बनियान पेहन के जो व्यक्ति है वो--

गाड़ी सर्व्हिसिंग किए जाते हैं।

और पीछे में खिड़की है और खिड़की लोहा के बने हुए हैं।

जमा व्यक्ति मन गाड़ी बाइक और ऑटो ले के जा--

ये एक पूजा स्थल है जेमा छठ पूजा मनाते महिला मन--

आठ कार दिखत है जेमे ब्लैक कलर के कार है ठीक लाल कलर के ठिक सफेद हैं।

और नीचे जो जमीन है--

मक्खन एवं गीर गाय का दूध उपलब्ध है लिखा है शुद्धता ही हमारी पहचान है।

यहां और दो व्यक्ति काम करते लेब--

ये जिम वाला कमरा है एमे टाइल्स लगे हुए --

और कुछ बहुत सारे दौड़े वाला--